ने अपनी एक फोटो ले रखी है जो फोटो हमें किसी जिम की लग रही हैं और वह अपनी सेल्फी में --

इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा चर्च है जिसके ऊपर एक ईसाई धर्म का सिंबल भी लगा हुआ है और यह पूरे लाल कलर का चर्च है जो देखने में काफी सूंदर और मनमोहक लग रहा है।

इस में से तो पानी नहीं निकल रहा है लेकिन ये बिना पानी के ही लगा रखा है और बच्चे काफी मजे से अपने माता-पिता के साथ यहां घूमने और खेलने आ रखें है उसी किनारे काफी हरे-भरे पेड़-पौधे लगाए हुए हैं।

यह एक बस स्टौप या ट्रैन इश्टेशन की फोटो लग रहीं है जहां पर --

इस एरिया को देख रहा होगा कि ये किसी मेले का आयोजन हो रहा है और यहां पर बच्चे अपना सांस्कृति प्रोग्राम देखा रहे हैं और यह काफी भीड़ उमड़ी हुई है ये किसी कॉलेज का दृश्य लग रहा है इसके चारों तरफ पेड़ और बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं काफी सुन्दर दृश्य है लोग इसका आनंद ले रहे हैं।